यहाँ पे मेला हो रहा है जिसमें बहुत सारा आदमी है मिक्की माउस और बच्चे लोग को मनोरंजन के लिए --